और यहाँ पे एक दिवाल में पी.ओ. पी. की गई है ।

ये एक नदी हैं जिसमे बहुत सारा पानी हैं पानी दिखाई दे रहा हैं उस साइड कुछ पेड़ दिखाई दे रहैं हैं।

और इस साइड भी एक पीपल का पेड़ लगा हुआ हैं एक पेड़ ओर लगा हुआ हैं और यहां पे आसमान दिखाई दे रहा हैं।

बड़े पेड़ है यहा पे एक पहाड़ी भि है और यहा पे एक कुत्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहा पे आसमान दिखाई दे रहा है ।

बहुत बड़ा हॉल है हॉल में बहुत सारी लइटिंग लगी हुई है और यहाँ पे दीवाल में अच्छी पेंटिंग की गयी है यहां पर फेन लगी हुई है बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

एक बिल्डिंग्स बनी हुई है और बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमे ग्रीन घास लगी हुई है।